इसमें तो एक हॉर्स है और जो कि घास खाता हुआ दिख रहा है पीछे आपको एक बिल्डिंग बहोत पुरानी बिल्डिंग ऐसी दिख रही है जो हॉर्स है वो ब्लैक कलर का है और इसमें जो आपको पेड़ दिख रहे हैं वो भी बहोत पुराने पेड़ हैं।

इसमें आप देखिये आपको एक उम्म्म जो है प्ले उम्म ग्राउंड दिख रहा है उसके पीछे आपको कुछ --